करेला शिमला मिर्ची हर एक तरह के में उन सब्जियाँ है जोकि बहुत बड़ी दूकान है।

यहाँ गमले में अलग-अलग तरह के फूल है। दूकान है ये यहाँ पे बोहत प्यारी-प्यारी फूल रखी हुई है गमले में।

जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। कॉलेज का नाम महामना मालवीय इंटर कॉलेज --

ये पार्क है और जो कि काफी बड़ा अब है और यहाँ पे गेट लगी हुई है।